उ उ उम्म टमाटर दिख रहा है बहोत सारा जल की दलियो में रखे-- ]

रोड दिख रहा है सामने बिल्डिंग दिख रही है।

एक रोड दिख रहा है फोर लाइन वाला और उसमें ट्रक दिख रहा है आगे--

बहुत सारे आदमी खड़े हैं बिल्डिंग के आगे शटर दिख रही राइट साइड